अ येलो रेड एंड पिंक शायज शायद ये कुछ मंदिर होगा उसके ऊपर एक झंडा भी है जो ऑरेंज कलर का है और एक लाइटिंग की वायर भी है वहा पे।

वंहा पे सब कोई टेबल के सामने बैठे हुए है दो लोग अ दो आदमी टेबल खड़े हुए है जो सबको समझा रहे है कुछ जो टॉपिक होगा उस पर और वंहा पे एक ही औरत है बाकी सब आदमी है।